का बहुत बड़ा ढेर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ ईटें भी लगी हुई है और सामने एक और बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसका रंग हरा है और कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं। दो व्यक्ति नजर आ र --

इस तस्वीर में हमें एक होटल दिखाई दे रही है इस होटल का नाम ग्रेटवे कर्नाटका है यह तस्वीर कर्नाटका की है।

दूकान के आगे दो गाड़ियाँ खडी हुई जिसमें से एक बाइक और एक मोपेड है जहाँ से एक आदमी निकलता हुआ जा रहा है।

इस चित्र में पेट्रोल टैंक दिखाई दे रहा है जहां पर बहुत भीड़ दिखाई दे रही है लोग पेट्रोल डलवाने के लिए सब एकत्र हुए हैं इस तस्वीर में हमें सब लोग बाइक पर दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग खड़े भी दिखाई दे रहे हैं।